हॉस्पिटल दिख रहा है दो बोर्ड दिख रहे है एक लड़की बैठी हुई दिख रही है एक जेन्ट्स बैठा हुआ दिख रहा है एक जेन्ट्स खड़ा हुआ दिख रहा है। एक लड़की--

वाइट कलर का मकान दिख रहा है एक पीला कलर दिख रहा है बादल दिख रहे खेत दिख रहे है काँच के पेड़ दिख रहे है।

छत दिख रहे है मकान दिख रहे है छत के ऊपर पानी की टंकी दिख रही है ब्लैक कलर पौधे दिख रहे हैं इधर साइड मे कपड़े दिख रहे है।

पानी टंकी दिख रही है बहुत सारे ईटे वगैरा दिख रहे है कार दिख रहे है दिख रही है फावड़े ईट गिट्टी लकड़ी दिख रही है।